यह दृश्य एक क्रेन का हैं क्रेन येलो कलर की हैं क्रेन --

इसके पास एक लोहे की पौड़ी भी पड़ी है।

पीलर के साथ मीटर लगा हुआ है इसके ऊपर जाके हम मीटर को चेक कर सकते है मीटर के ऊपर --

रोशनी भी काफी तेज आ रही है।

सूरज की रोशनी काफी तेज सामने सोलर पर--

पर यह गेट अभी लगा नहीं है।

बड़ा सा व्हाइट कलर का नेट भी लगाया गया है जिसमें बच्चे खेल कर बास्केट को ऊपर फेंकते--

इसके सामने एक क्लॉक भी लगा है।

है बड़ी खुली जगह पर टू थ्री बड़ी क्रेन पड़ी है।

यह क्रेन भारी सामान को उठा कर--

साइड में ट्रक के बीचमें लंबी लंबी पाइप --

यह दृश्य एक बहुत ही सुंदर घर का है सुंदर घर में खिड़कियां विंडो सारी बंद पड़ी है साम--

ग्रीन छत पर बैलून लगे हैं यह बैलून बहुत सुंदर लग रहे हैं बैलून की रेड कलर की लडियां भी लमक रहीं हैं।

दो आदमी घोड़े बनकर नीचे बैठे हैं।

दो आदमी उनके ऊपर चढ़ कर कृष्ण जी जैसे पोज़ ना कर बासुरी की तरह पकड़ कर बैठे है।

वह न रंग बिरंगे मैटों पर बैठे हैं।

यह एक बड़ी बजरी की पीसने वाली मशीन है।

उसके पास एक रेड चेयर कलर की पड़ी है।

ऊपर मंदिर के लाइनों में पाठ के--